सामने एक सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सीढ़ी के साथ ही एक रास्ता दिखाई दे रहा हैं रास्ते के बाहर कई सारे रिक्शा खड़े नजर आ रहे हैं। एक आदमी सामने खड़ा नज़र आ रहा हैं।

सामने एक हॉस्पिटल नजर आ रहा हैं एक डॉक्टर एक मरीज की चिकित्सा करते हुए दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक किताब की दुखान दिखाई दे रही हैं किताब की दुखान की अंदर एक आदमी बैठा नजर आ रहा है बाहर--

कई सारे पेन ऊपर की तरफ चूल्हा कर रखे दिखाई दे रहे हैं।

पानी एक पार्क में से बह रहा है बीचों-बीच पानी का फवारा लगा हुआ दिखाई दे रहा है आस-पास लोग सीढ़ीओ पर बैठे नजर आ रहे हैं कुछ लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

दूर-दूर में चिमनियाँ नजर आ रही है।

सामने एक पहाड़ नजर आ रहा है पहाड़ को मशीन द्वारा खुदाई करती हुई दिखाई दे रही है।